नियत स्थान पर और यहा पर एक फेक्टरी भी खुला हुआ हे जहा पर कुछ काम से लोग पोल लगे हुए हें।

अ जल कून डाला हुआ --

एण्ड ऐ.सी लगा हुआ है और लाउड स्पीकर का भी साउन्ड लगा हुआ है यहाँ पर बच्चे आकर पढ़ाई करते है।